और लाल रंग का कालीन भी बीछा हुआ है।

और बहोत सारे गमले भी लगे हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे--

यहां कूलर और ए_सी मिलते हैं।

और सारा सामान मिलता है।

और एक आदमी कुर्सी पे बैठा है।

ये बहुत सुंदर घर नजर आ रहा है।

और ऊपर गुब्बारे भी लगा रखे हैं।

और बहोत बड़ा मैदान खाली भी है।

वहीं पड़ी हैं और वो जैसे पुराना पुराना--

एक आद बहुत सारे आदमी जमीन पे बैठे हैं और--

देरी है और यहां एक बड़ा चौतरा भी नजर आ रहा और एक घर भी और यहां पे--